सफ़ेद कलर की है और जिसमें पट्टीयाँ और खिड़कियां नीले कलर की है इसके बगल में दो और बिल्डिंग दिख रही है जो नीचे हरी सी और उप --

सामने एक दो घर दिख रहा है जो वो हरे कलर का है और उपर नीला सा बड़ा बोर्ड लगा हुआ है जो नीला - सफेद है और --

और बहोत से पेड़ दिखाई दे रहे है जो काले - काले दिख रहे हैं उपर ब्लैक एंड वाइट आसमान और कहीं हरा - लाल आसमान दिखाई दे रहा --

पानी का अम पाईप है जिससे गाड़ी धो रहा है नीचे लालटास लगे हुए हैं। ऊपर अम टीने हैं जो --

चार बड़े ऊंचे-ऊंचे सफेद पेड़ दिख रहे हैं और ऊपर उसमें बड़े-बड़े पत्ते लगे हुए हैं और नीचे छोटे-छोटे पेड़े हैं।

सामने एक बड़ा-सा घर दिख रहा है जो क्रीम कलर का दिख रहा है और जिसमें पट्टियाँ लाल कलर की बनी हुई हैं और खिड़कियां --